और इसमें एक आसमान दिख रहा है जो कि व्हाइट कलर का जो पर्पल कलर का चर्च है कुछ ट्रीज भी दिख रहे हैं इसमें इसमें व्हाइट कलर की डिटेलिंग भी है।

ये बेसिकल एक मैरेज गार्डन है।

क्यूंकि बहोत खूबसूरत लग रही है यहाँ पर अगर कोई फोटो खिचवाएं तो बोहोत अच्छी पिक्चर आएगी| आर आसमान पूरा व्हाइट कलर का दिख--

ये बेसिकली एक गार्डन टाइप है और आसमान में पीछे बहुत बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और व्हाइट कलर की रंगोली बनाी हुई है उसमें चॉक से ड्रॉइंग उसमें वो कलर भर रहे हैं और रंगोली बना रहे हैं सब लोग साथ में बैठ --

ये किसी का घर बन रहा है बेसिकली ये एक टेरिस है और ये बहोत सारे ग्रीन कलर पेड़ भी लगे हुए हैं और कुछ लोग हैं जोकि लकड़ी की छत डाल रहे हैं ।

इसी के लिए एक रूम है और रूम के अंदर एक टावेल रखी है और बहोत सारे लोग बेढ़े हुए हैं और एक कंप्युटर भी हेगा उसमे गेट हेंगे।